यहाँ एक चड़क दिखाई दे रही है इसमें एक दरवाजा नज़र आ रहा है जिसका रंग नारंगी नज़र आ रहा हैं ।

एक गाड़ी पर एक जाता हुआ एक इन्सान दिखाई दे रहा है एक साइकिल दिखाई दे रही हैं ।

ऊपर आसमान नजर आ रहा है आसमान का रंग सफ़ेद दिखाई दे रहा है एक खम्बा --

पुंगी वाले सभी बाजे बजा रहै है एक आदमी के पास बेग नजर आ रहा है जो की--

दोनों तरफ ऐसे ही नजर आ रहा है।

सामने दीवार नज़र आ रही है जिसका रंग गुलाबी नज़र आ रहा है सीढ़ियों का रंग नारंगी हैं।